इन लोगों के बिल्कुल पीछे छोटी सी नेट भी लगी हुई है।

ये एक वाटरपार्क की तस्वीर लग रही है जिसमें वाटरपार्क से संबंधित सारे खिलौने रखे हुए हैं।

हर एक विद्यार्थी के पास अलग अलग का शीट है तो किसी के पास सफेद है तो किसी के पास नीली --